यहां कुछ गाड़ियां पार्क की गई है।

आस पास कुछ पेड़ भी है।

यहां कुछ जंगली पत्तों की बेले लटकी हुई दिख रही है।

यहां तीन सफेद मशरूम दिख रहे हैं।

यह दिन का समय है।

काफी सारी बाइक्स से रखी हुई है।

यहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं।

यहां एक नदी दिखाई दे रही है।

यहां रांची म्युनिसिपालिटी का गेट दिखाई दे रहा है।

दीवार पर कुछ बेवरेजेस के फोटो ट चिपके हुए हैं।

उसे काफी सुंदर तरीके से सजाया गया है यह क्रिसमस का टाइम लग रहा है।

यहां एक जगह इ_एल कामधेनु लिखा हुआ है।

यह एक हेयर कटिंग सैलून है।

यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है यहां सब्जी तौलने का मशीन रखा हुआ है।

इस डेरी का नाम खुशी डेरी है।

एक नीले रंग का टॉवल दिखाई दे रहा है यहां एक एल_इ_डी टी_वी लगा हुआ है।

दीवार पर कुछ फोटो फ्रेम्स लगे हुए हैं।

इसमें काफी डिजाइनर खिड़कियां बनी हुई है काफी सारी मीनारें बनी हुई है।

नारों पर काफी अच्छे मार्बल और टाइल्स लगे हुए हैं।

यहां अलग अलग डिजाइन की शेरवानियां लगाई गई हैं।

यहां दीवार पे कुछ तस्वीरें लगी हुई है।

यह शेरवानियां ऊंचे स्थान पर रखी हुई है।

टेबल के ऊपर कुछ चम्मच रखे हुए दिख रहे हैं।

यहां एक टैंकर का फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है।

बूढ़ा आदमी यहां घूमने आया हुआ है।

यहां एक बहोत बड़ा ऊंचा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

एक टोकरी में आम रखे हुए हैं।

यहाँ शुभ लिखा हुआ दिख रहा है।